हम देख सकते है कि में एक कम्पनी महिला और महार बैठे हुए है और ये टेबल चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं इधर लाल कलर का ये है।

इस चित्र में एक मॉल है लड़के लोगों की चीजे़ हैं उधर जरकिने हैं इधर जकेट्स है इधर पेंट्स हैं दो लोग लड़के चलते हुए जा रहे हैं और लाइट्स से यूटूब एक लिखा हुआ है।

और आजु बाजु नेट है और दो लोग भी हेल्मेट पहने हुए है एक विकेट कीपर है एक बैट्समेंन है और वो लाईन के अंदर खड़े हुए ब्लैक कलर के पैड्स पहने हुए है।

पिक्चर में कार है और कार में बोहोत सारी कार हैं व्हाइट कलर है हरे-व्हाइट कलर ब्लू कलर के शैड हैं।

और एकजास्ट फैन है और डोर है और उधर टीचर पढ़ाने के लिए स्टैण्ड है और स्टुडेंट्स के बैठने के लिए ये चेयर है।

देख सकते हैं कि इस पिक्चर में वो पूजा कर रहा है दो तीन मूर्तियां हैं और एक घड़ा है सामने प्लेट हैं।